यह गिटार का कलर येलो है और--

पेड़ पौधों का कलर हरा है।

यहां पर बहोत सारे घर भी बना--

यहां पर एक बहोत बड़ा रोड है।

और कई टाइलों का कलर मेरून है।

यहां पर एक बहोत बड़ा ग्राउंड --